इस पिक्चर में एक गुलाब का फूल है गुलदस्ता है बहोत सारे गुलाब हैं और यल्लो कलर के गुलाब भी हैं न।

ये एक ये एक आ_इ_ल _ट _स सेंटर है जिसके बाहर काफी सारे बोर्ड्स लगे हुए है।

काफी सारे बॉक्स है और रेड कलर के स्टैंड बने हुए हैं। चेयर है और टेबल है।

ब्लू येलो रेड है और साथ में एक दुकान आदमी बैठा हुआ है चेयर पे जिसमें दो चेयर है तीन चेयर है।